यहाँ पर कोई मोटर्स का बोर्ड दिख रहा है जहाँ पे कुछ गाड़िया खड़ी हुई हैं अ कार्स खड़ी हुई है सामने मे भी कार्स खड़ी हुई हैं।

इसकी बाउंड्री ऊपर से सफेद कलर से पुती हुई है ये जो है पीले कलर से लिखा हुआ है।

--कुछ तालाब टाइप दिख रहा है एक बडा सा पत्थर दिख रहा है जहां श्री राम लिखा हुआ है पीले कलर की मट्टी डली हुई है दूर में--